कुछ साइकिले वगेरा खड़ी हैं एक बाइक खड़ी स्कूटीस भी खड़ी हुई हैं और बिल्डिंग के सामने हरे भरे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं उसके--

इस ये स्कूल सी_बी_एस_ई का स्कूल है इसके सामने और कुछ स्कूटियां खड़ी हुई है पार्किंग मे दो बच्चे गेट पे है कुछ गेट के पास दिखाई दे रहे है।

में गुस्ते ही सामने पेडिया लगी हुई दिखाई दे रही है और रोड साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग और दिखाई दे रही है लेफ्ट में एक बड़ी बिल्डिंग --

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर चढ़ने के लिए दिखाई दे रही है एक--

एक बाबा ऊ पग बांध के मंडस्य से बांध के उसके ऊपर से उतरते हुए आने लग रहे --

उसके ऊपर गु एक गुरुद्वारा की फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है।

और यहां पे लोग मिल सकते हैं प्लेट्स भी रखी हुई हैं ग्लासेस भी रखे हुए हैं और दो अंकल --